जिसे प्लास्टिक से रैप किया हुआ है।

एक कार का डेस्क बोर्ड नजर आ रहा है।

और बाहर में एक पेड़ है।

जिसमे ऊपर की ओर जाती हुई सीढ़ीयाँ है।

का कलर यलो है।

जहाँ बहुत सारे अंडरगारमेंट्स रखे हुए है।

रोड के एक साइड में पेड़ है।

जिस पे एम.ओ. इलेक्ट्रिक बाइक प्रताप ऑटो मोबाइल्स लिखा हुआ है।